लकड़ी की मेज व कुर्सियां रखी हुई है यहाँ के छत पर भी पौधे लगे हुए दिखाए गए है यहाँ सामने की तरफ और भी पौधे लगे हुए है।

यहाँ एक पूल के नीचे नदी दिखाई गई हैं जो की पानी के लहरे के साथ पूल के नीचे जा रही है।

छत पर एक पंखा भी लगा हुआ है फर्श पर सफ़ेद रंग की टाइल्स लगी हुई है।

यहाँ दो व्यक्ति ने नीले रंग के कपड़े पहने दिखाए गए है उन्होंने गाड़ी को ऊपर की तरफ उठाया हुआ हैं गाड़ी आगे से खुली हुई हैं।